साथ में हमें एक बाल्टी दिख रही है बाल्टी के साथ में हमे एक व्यक्ति दिख रहा है।

इनके अंदर ऑक्सीजन भरी जाती है यह डॉक्टर उनकी रखवाली कर रहें हैं।

इस चित्र में हमे एक शहर दिख रहा है शहर में हमे बहुत सारे अनेक मकान दिख रहे है।

जिसमें दीवाल खड़ी होती हुई दिख रही है। साथ में हमें चित्र में कुछ ईंट --

कुछ लोग चर्च के अंदर नज़र आ रहे हैं। चर्च के अंदर कुछ लोग साइड में खड़े हैं। साथ में बीच में --

एक काले रंग की और एक लाल रंग की बाइक भी हमें दिख रही है और एक टेबल भी रखी है।

साथ में हमें कुछ छोटे-छोटे अलग-अलग प्रकार के पेड़ नजर आ रहे हैं।

इस क्षेत्र में हमें बोहोत सारी गाड़ियां दिख रही है। यह एक शोरूम दिख रहा है। यहां पे अलग-अलग प्रकार की बहुत सारी टू व्हीलर हैं।

जो दो व्यक्ति जेट स्की पर बैठे हैं एक ने येलो टी-शर्ट पहन रखी है और एक नहीं सफेद कमीज पहन रखी है।

साथ में इन लोगों की जो योगा की मैट है वो भी पीछे रखी हुई दिख रही है।

एक व्यक्ति वाइट कलर की शर्ट और वाइट कलर की पैंट पहने हुए खड़ा है।

बीच में अगर हम देखेंगे तो वहाँ पर एक मोटर नज़र आ रही है। मोटर के थोड़ी ही आगे एक साइकिल भी नज़र आ रही है।

इस चित्र में हमें एक तालाब नजर आ रहा है तालाब के आस-पास खड़े रंग-बिरंग कपड़े पहने अलग-अलग प्रकार के लोग नजर आ रहे हैं।

इस चित्र में हमें एक बहुत बड़ा तालाब नजर आ रहा है तालाब के ऊपर खुला आसमान सफ़ेद बदल नजर आ रहे हैं।